तो ब्लू कलर का पिलर दिख रहा है जो ब्लू कलर का पाइप का पिलर दिख रहा है।

एक स्कूटी एक ठेला गाड़ी रखा हुआ दिख रहा है और--

इसमें से एक वायलेट कलर दिख रहा है एक क्रीम कलर दिख रहा है यहाँ पे पीछे एक फोटो फ्रेम दिख रहा--

किया हुआ दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का यहाँ पे काफी सारा पेड़ और पौधा दिख रहा है ये--

और यहाँ पे एक गेट है जो कि ब्लैक कलर का है और गेट के साइड पे जो--

येलो कलर का घर दिख रहा है आसपास काफी सारे गच्छ दिख रहे हैं।

और यहाँ पे ऊपर पे ब्लू कलर के बोर्ड पे लिखा हुआ है डीजल --